बी अह बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

बना हुआ है उसमें फूलों से सजा हुआ--

जमीन का कलर नीला और लाल है पंखा लगा हुआ है।

इसमें झंडे भी लगे हुए हैं साइड में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं और मैदान दिख रहा है।

यह तस्वीर एक रूम की है जिसमें एक अलमारी--

घोड़े दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी बैठा हुआ है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी रंग बिरंगी लाइटे दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक आइसक्रीम शॉप की लग रही है जिसमें बहुत सारे फ्रीजर और ए_सी सामने दीवाल --

लोहे की कुर्सियां और बेंच पड़ी हुई हैं।

जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है।

जमीन में टाइल्स लगी हुई है।

तस्वीर में मुझे बड़ा-सा मैदान दिख रहा है मैदान में जीने बने हुए हैं।

तोते का कलर सफेद हरा--

बड़ा सा शीशा लगा हुआ है।

स्वीर में मुझे एक कमरा दिख रहा है जिसमें बेड पड़ी हुई है।

एक साइड में बैग रख--

इस तस्वीर में मुझे बड़ा सा मैदान दिख रहा है मैदान में बसें खड़ी हुई हैं बहोत सारे लोग आते जाते--

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं और एक मैडम सफेद कलर की ड्रेस पहने--